वे कुर्ती अलग अलग रंग के लटका कर रखा हुआ है।

जमीन पर भी छोटे छोटे घास भी निकला हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे बहुत सारे मछलियां नजर आ रहा है।

उस औरत के हाथ में एक ऑरेंज कलर का प्लास्टिक भी पहना हुआ है।

यहा सभी दारु को एक अलमारी में रखा हुआ है।

सभी दारु के बोतल कुछ छोटे हैं और कुछ लंबे हैं।

सामने बहोत सारे अनार सजाया हुआ है।

सामने ब्लैक बेरीज भी दिख रहा है।

यह जिम के अंदर बहुत सारे एक्सरसाइज करने वाले मशीन भी रखा हुआ है।

यह कमरा के जमीन पर कुछ कारपेट भी बिछाया हुआ है।

गाड़ी की कोने में एक बाइक का टायर भी दिख रहा है।

यह लाइब्रेरी का दीवार का रंग येलो कलर का है।

इस लाइब्रेरी का सब दरवाजा और खिड़कियां भी खुला होकर है।

ब्रिज के ऊपर एक इंसान भी खड़े होकर है।

इस जहाज का रंग सफेद कलर का है।

यह पिक्चर के अंदर मुझे एक पार्किंग वाली जगह दिख रहा है।

जमीन पर एक लाल कलर का बास्केट भी दिख रहा है।

लड़की के सामने एक ग्रीन कलर का टेबल भी रखा हुआ है।

कमरे की दीवार में बहोत सारे खिरकी पे पर्दा भी लगाया हुआ है।

यहां पर एक बड़ा सा नदी दिख रहा है।

घर के पीछे एक लंबा सा दीवार भी दिख रहा है।

यह कमरे के अंदर पे बहुत सारा बैलून से सजाया हुआ है।

एक बड़ा सा टेबल भी दिख रहा है टेबल के ऊपर भी कंप्यूटर रखा हुआ है।